थिएटर में बहोत ही बड़ी जगह होती है यहाँ पे हम फिल्म का आनंद लेते हैं।

पेट्रोल पंप पेट्रोल पंप में ऐसी जगह होती है जहाँ पर अपनी गाड़ियों में तेल डलवाते हैं।

जो कि फूलों की म्म से पूरा सजा हुआ है। बोहोत ही अच्छे रंगीन पर्दे और --

और दरवाजे भी हैं जिससे हम लोग बाहर और अंदर जा आ --

दिखाया गया है फोटो में बोहोत ही --

बैठतें है और तरह तरह के खाने आती उधर खाते है।

इसमें एक फर्नीचर हाउस को दिखाया जा रहा है।

ठीक से समझ में नहीं आ रहा है की क्या बनाने की --

पूजते और उनको प्रार्थना कर --

फवारेफवारे ऐसी जगह होती है जहाँ पर पानी का --

ऐसा लगता हुआ की ये किसी टेलर्स की दुकान है।

और बगल में दो प्यारी सी लड़कियां --

और काफी लकड़ियां का कुर्सियां इसमें रखी गईं हैं।